और फोटो घिंचवाते है बहुत से टूरिस्ट लोग यहाँ आते है और मजे करते है आपलोग भी आइए और मज़े करिए एन्जॉय करिए।

ये तो अभी तो इस जगह पे काम चल रही है अभी ये जगह पूरी तरह से त्तैयार नहीं हुआ है फिर भी देखिए कितना अच्छा फील्ड है ये जगह जब त्तैयार होगी तब तो यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा सभी लोगों को सभी यहाँ पे आके घूम सकते हैं अभी फिलहाल में यहाँ पे काम चल रही है।

ये तो कपड़े की शोप लग रही है | उम्म गर्ल्स शोप है और ये बच्ची की फ्रॉक टांगी हुई है और ये कितनी मस्त लग रही है |